छोटे-छोटी घांस है। नीचे जमीन है। एक कटोरा है और यहां पे बड़े छोटे पेड़ --

यहाँ पे एक झाड़ पे और बड़ा सा पहाड़ है खुला आसमान है। ये --